जिसमें एक साइकिल खड़ी है।

यह एक सरकारी ऑफिस है।

और ईस्कूल के बाहर एक--

यह कहीं का हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

और उस घर में एक ए_सी है इस कमरे में बहोत सारी लाइट जल रहे हैं।

कलर का शर्ट पेहना हैं और नीले कलर का लूंगी पेहना हैं।